बाइक पर बैठे हुए दिख रहे है और पेट्रोल पंप के कर्मचारी नज़र आ रहे है ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और सामने मे कुछ हरे पेड़ नज़र आ रहे है छत दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है लाइट्स लगे हुए है।